यहाँ पे एक ट्रैन नज़र आ रही है ट्रेन के ऊपर इंडियन रेलवे लिखा हुआ है लाल कलर में --

दूसरी साइड पे भी एक बोर्ड लगा हुआ है नीले कलर का जिसके ऊपर एक मेढ़क की पिक्चर --

दूसरे आदमी कुर्सी पे बैठा हुए है वो चाय पी रहा है उम यहाँ पे बहुत सी बुक्स --